देवाल का सीन भी है पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारा ऑटोरिक्शा लगा हुआ है गाड़ी भी चल चल रही है एक बाइक भी लगा हुआ है एक आदमी भी खड़ा है।

और कुछ मंदिर भी हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर एक घर दिख रही है जहां उसके नीचे बहुत सारा बाइक लगा हुआ है और नीचे कार भी लगी हुई है और एक पीला कलर का ट्रक भी रखा हुआ है।

यहां पर एक ट्रक लगा हुआ है।

और ट्रक लगा हुआ नया है और पीछे एक घर भी है।

सारे गया हुआ है और कुर्सी भी दो दिख रही है और पुतला भी है।

और हर प्रकार कॉपी किताब यहां पे मिलता है।

जहां पर लड़के लोग आकर जिम करते हैं वह सारा सामान रखा हुआ है डम्बल रखा हुआ है।

और एक पोस्टर भी रखा हुआ है एक शिशा का गेट भी दिख रहा है।

भूरा कलर का है और एक बस भी दिख रही है एक कार भी दिख रहा है।

यहां बहोत सारा गुब्बारा रखा हुआ है और कुछ लोग खरे हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं बहोत सारा चेयर रखा हुआ है और कुछ लोग आ रहे हैं बैठे हुए हैं।

यहां पर ट्रेन को पटरी देखने को मिलता है जो खाली है और एक पर ट्रेन जा रही है।